यह एक सैलून का इंटीरियर दिख रहा है।

एक पेंपलेट पे दो सौ सत्रह लिखा हुआ है।

जमीन पे दरारें आ गई हैं।

बच्चे काफी मेहनत से अपनी ड्राइंग बना रहे हैं।

एक गोल शीशा दिखाई दे रहा है।

यह एक आर्ट एंड क्राफ्ट का दुकान है।

एक आदमी अन्दर जाता दिखाई दे रहा हैं।

यह बहोत सारे दालों और खनिजों का दुकान है।

बहुत सारे लोग यहां पहुचे हुए हैं।

यहां बहोत सारे शैंपू और साबुन रखे हुए हैं।

यहां कुछ लोग मछली खरीदने आए हुए हैं।

एक वजन तौलने का मशीन भी है।

यह एक बड़ा साड़ी का दुकान है।

यहा दो काले रंग का सोफा दिख रहा है।

एक वेट मशीन दिखाई दे रहा है।

दो बच्चे यहां उछल रहे हैं।

यहां बहुत सारे फूल खिले हुए हैं।

इसका नाम संत पॉल कॉलेज है।

यहां तीन चार बाइक दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक सीढ़ी भी बना हुआ है।

दिवाल पे गोल डिजाइन बना हुआ हैं।

यहां कुछ घर बने हुए हैं।

यह एक हीरो का बहुत बड़ा शोरूम है।

काले रंग का ग्रिल का गेट है।

यह एक शानदार मंडप है।